यह एक कॉलेज कॉलेज है जिसमें बोहोत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यह बोहोत बड़ा है। इसमें गार्डन में साइकिल भी दिखाई देते हैं ।

यहाँ पे मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे आदमी आए हैं और भीड़ भी बहुत है। इसमें बहुत सारे समान भी है बहुत अच्छा से सजावट भी किया हुआ है जिसमें आदमी सब घूम रहा है और इधर अंधेरा भी दिखाई दे रहा है।